एक कंकाल दिख रहा हे जो की बिस्तर पे सोया हुवा है। इसके आसपास मे औषध दिख रहे है। इधर एक खिड़की भी दिखाई दे रही हे । खिड़की मे परदा भी है।

यहाँ एक मंच दिखाई दे रहा है। दो सोफे दिखाई दे रहे हैं। मंच को बहुत ही अच्छी तरीकों से अलग-अलग फूलो से सजाया गया है।

यह एक बड़ा सा मकान दिख रहा है। ऊपर आसमान दिख रहा है।

मकान में बहुत सारे छोटे बड़े खिड़किया दिख रहे हैं। कुछ कुछ खिड़किया खुली हुई है। ऊपर बिजली का तार दिख रहे है और एक पेड़ भी दिखाया जा रहा है।

ये एक रेस्टुरेंट है। सामने बहोत सारे टेबुल दिख रहे हैं बहोत सारे कुर्सियां दिख रहे हैं।

निचे हरा भरा घास दिख रहा है। बहोत सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं। पीछे कि तरफ बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रही है।

एक कृतं झरना दिख रहा है। पीछे कि तरफ बहोत सारे लोग चलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने अंदर बातें करते हुए दिख रहे हैं। एक औरत ज़मीन पे बैठी हुई है।

ऊपर बहोत सरे बत्तियां दिख रहे हैं। इधर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी का हाथ में एक घड़ी भी दिखाई दे रही है।

सामने दीवार दिख रहा है। उपर आसमान दिखाई दे रहा है। यह दो शेर की मूर्ति दिखाई दे रहे है।